और हमारे सामने एक छोटासा पेड़ भी लगा हुआ है उसके नीचे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं।

और पिलर्स ब्लैक ब्लैक कलर के हैं नीला आसमान है बादल व्हाइट व्हाइट भी दिख रे हैं थोड़े थोड़े।

जोकि नीले रंग में थोड़ी पु पुती हुई है और चॉकलेट कलर मतलब क्रीमी कलर में पुती है।

भगवान की सारी और व्यक्ति भी खड़े हुए हैं देख रहे हैं।

हमारे सामने कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे है।

जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। कुछ रूम दिख रहे हैं। पेड़-पौधे भी लगे हैं।

हमारे सामने फर्नीचर के समान दिख रहे हैं जोकि ड्रेसिंग --

जो कि काई भी लगी है छोटे छोटे पौधे भी लगे हैं अ बहोत ही पुराने मकान दिख रहे हैं।

स्कूटी खड़ी है बाईक खड़ी है और कार भी खड़े है सीट भी रखी हुई है शायद सीट की भी दुकान है बाजू में।

इस स्टैंड पर काफी सारे कपड़े रखे हैं।

मतलब स्टोर रूम टाइप मतलब बाहर गार्डन जैसे है बोल दे आपन--

एक ब्लेजर पहना है एक किड्स के कपड़े पहना है अन्दर बहोत सारे स्टैंड दिख रहे है जहां पर कपड़े रखे हुए है।